नमस्कार हमने यहाँ अपना एचटीएमएल फॉर्म बनाया है और यह निश्चित कर लिया है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो पोस्ट वेरिएबल द्वारा डेटा संसाधित हो जाता है
सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए अगली चीज़ जो हम करेंगे वह है कि इस पर कुछ कंडीशंस को जांचेंगे
मैं कहूँगा यदि स्ट्रिंग लेन्थ नहीं मैं पहले मौजूदगी के लिए जाँचूंगा अतः इफ नामे एंड मेसेज यह केवल कह रहा है कि क्या यह और यह मौजूद है क्योंकि जब तक यह मौजूद है हमेशा इनमें वेल्यू ट्रू होगी
और यहाँ हम एंड ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं जो यहाँ कहता है कि क्या यह ट्रू है और क्या यह ट्रू है
यदि नहीं तो इस स्क्रिप्ट को मिटाना चाहूँगा और मैं लिखूंगा यू मस्ट enter आ नामे एंड मेसेज और प्रभाव के लिए उसे रेखांकित कर सकते हैं
और कोड के ब्लॉक के भीतर - यदि यह ट्रू है हम अन्य जाँच यानि चेक करेंगे
अतः यहाँ हमने एक्सिस्टेंस चेक के साथ जाँच की है
हम यहाँ क्या करेंगे कि एक अन्य चेक रन करेंगे
मैं इसे क्या शब्द दूँ
मैं एक लेंग्थ चेक लेन्थ चेक करूँगा
अतः मैं इन्हें लेंग्थ चेक द्वारा कमेन्ट करूँगा
हम लिखते हैं नामे या तो string लेंग्थ फंक्शन का उपयोग करके स्ट्रिंग की लम्बाई यानि लेन्थ लिखते हैं
हम चेक करते हैं कि यदि नेम की स्ट्रिंग लेन्थ फंक्शन हमारी अधिकतम लेन्थ जोकि 20 है उससे बड़ी है या कम या उसके बराबर है हम यहाँ कोई भी संख्या दे सकते हैं
और मेसेज की स्ट्रिंग लेन्थ 300 अक्षरों से कम या उसके बराबर है
स्पष्टतः यहाँ भी कोई भी संख्या दे सकते हैं
और फिर कोड के इस ब्लॉक को निष्पादित कर सकते हैं
नहीं तो हम लिखते हैं मैक्स लेंग्थ फोर नामे इस 20 एंड मैक्स लेंग्थ फोर मेसेज इस 300
एक और अच्छी चीज़ है 300 और 20 को वेरिएबल्स में संचित करना
इसे यहाँ सेट करते हैं
आप लिख सकते हैं नमेलें 20 और मेसेजलेन 300
फिर आप इसे यहाँ जोड़ सकते हैं अतः यहाँ नमेलें माफ़ कीजिये namelenयहाँ
और यहाँ आप लिख सकते हैं - ओह160
इसे वापस लिखते हैं और यहाँ मेसेजलेन लिखें
यहाँ नीचे भी इन्हें रिप्लेस करें
अतः यह बदल जाएँगे यदि आप चेक क्रियान्वित कर रहे हैं
अतः यहाँ आप लिखते हैं मेसेजलेन
अतः इसे जाँचते हैं
नमेलें अधिकतम 20 अक्षरों के होते हैं अतः यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर ही एन्टर कर सकते हैं
अतः यहाँ एलेक्स मेसेज में यहाँ मैं 300 अक्षरों से ज्यादा टेक्स्ट एन्टर करूँगा
मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा
यह अब 300 अक्षरों से ज्यादा होना चाहिए
अतः यदि मैं सेंड मे थिस बटन क्लिक करता हूँ हमें यह मेसेज मिलता है थे मैक्स लेंग्थ ओएफ थे नामे इस 20 यह वह वेरिएबल है जिसे हमने यहाँ लिखा था
और इसके लिए अधिकतम लेन्थ 300 है यह यहाँ से ली गई एक अन्य वेरिएबल है
हम चेक ले रहे हैं और इस वेरिएबल को भी एको कर रहे हैं
यह मानते हुए कि सब ठीक है हमें उपयोगकर्ता को भेजे हुए ई मेल मिलेंगे
मैं इस अड्रेस पर जोर दे रहा हूँ और यहाँ पहले ही हमारी सब्जेक्ट लाइन है
हम इसे यहाँ नीचे ला सकते हैं वेरिएबल सेट करने का कोई मतलब नहीं है यदि भेजने के लिए ई मेल तैयार नहीं है
अतः यह हमारे सेटअप वेरिएबल्स हैं और हमारे पास
फ्रॉम भी है लेकिन यह ई मेल अड्रेस के समान है
अतः हमारे पास नामे पहले से ही है और हमें मेसेज की आवश्यकता है जोकि यहाँ मौजूद है
हमें हेडर की भी कुछ जानकारी चाहिए जिसे मैं जल्द ही बताऊंगा लेकिन अभी के लिए हम सीधे मैल फंक्शन को देखते हैं
मैल फंक्शन इस तरह से है - मेल और पहला वेरिएबल जो आपको लिखना है वह है कि किसको यह मेसेज भेजना है
मैं टाइप करूँगा टो
और फिर ई मेल का सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट है
यह यहाँ है
फिर ई मेल का मुख्य भाग अतः बॉडी
यहाँ हम लिखते हैं बॉडी थिस इस एएन इमेल फ्रॉम नामे
अतः हमने ई मेल के बॉडी में नेम जोड़ा है
फिर नई लाइन के लिए बैकस्लैश एन का उपयोग करते हैं अतः दो नई लाइन्स
अगला हम मेसेज एको करते हैं जिसे इसमें शामिल करेंगे
अतः यहाँ बॉडी में एक सामान्य मेसेज उपयोगकर्ता का नाम जिसे हमने फॉर्म में संसाधित किया है और दो नई लाइन्स और आगे मेसेज लिखा है जिसे फॉर्म में एन्टर किया है
अतः इसे हटाते हैं
यह सही लग रहा है
मैल फंक्शन के रूप में आप सोच सकते हैं कि यह कैसे काम करेगा लेकिन पह्प ई मेल भेजना काफी आसान है
लेकिन हम वास्तव में कब ई मेल भेजते हैं हम देखते हैं कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं
हमें एक वार्निंग मिली है थे मैल फंक्शन सेंड मैल फ्रॉम इस नोट सेट इन पह्प डॉट इनी ओर कस्टम From हेडर मिसिंग
मैंने अपने इनी में सेंड मैल फ्रॉम नहीं सेट किया है
मैं इसे भूल गया था इसलिए इसे खुद से करता हूँ
इसको करने के बाद हमें एक और एरर मिलता है
मैं आपको बताऊंगा कि इसे ठीक कैसे करें लेकिन विडियो एक अगले भाग में
अगले भाग में हम अन्य एरर जो इसके बाद मिलेंगे उन्हें देखेंगे
अतः हमसे अगले भाग में मिलिए
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ